आप यहां पे देख सकते हैं देखना में बहुत अच्छा लग रहा है | यहां पे घर है बहुत बड़े-बड़े और यहां पे एक बुलेट गाड़ी है जो की देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहां पे अभी सभी दुकानें बंद हैं जो की बहुत ही अच्छे है और यहां पे एक बैंक भी है।

और यहाँ पे एक पानी का बोटल है जो देखने में काफी सुंदर लग रहे है यहाँ पे अभी कोई भी वी_आई ---

यहां पर फुटबॉल रखा हुआ है जो की देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है | उस नीचे मे यहां पे कपड़े रखे हुए हैं बहुत सारे। जो कि ये दुकान बहुत ही अच्छा लग रहा हैं देखने में और यहाँ पे बैलून से भी सजाया गया है |

यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पो लगे हुए है और यहां पे स्कार्पियो भी है जो की देखने में काफी खूब सुंदर लग रहे हैं और यहां पर बहुत सारे पेड़ लगाए भी लगे हुए जो कि देखने में बहुत ही हरा भरा दिखाई पड़ते हैं |

और यहां पे सभी शेटर खुले हुए है जो की देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पे बल्ब भी लगे हुए है।

यहां पे एक भाई साहब जो है अपने सब्जी को इकट्ठा करते हैं ताकि कोई भी ग्राहक आए उसको देने में दिक्कत ना हो बहुत ही अच्छे हैं दिखने में काफी सुंदर है यहाँ पे ग्राहक भीड़ लगाए हुए हैं।

यहां पे आप देख सकते है यहां पे बहुत बड़ा मंदिर है जो कि देखने मे काफी सुंदर लग रहे है और यहां पर बहुत सारे मंदिर है और यहां पे टावर पे घिसे गए हैं लाइन का तार जो कि देखने मे बहुत ही अच्छा लगता है।

और यहाँ पे आसपास में बहुत सारे जंगल है जो हर-भरा दिखते है और पेड़-पौधे भी है जो कि पूरा हरा-भरा है बहुत --

यहां पे कोकोकोला मिलता है और स्प्राइट मिलते है और यहां पे स्कैनर भी लगे हुए है जो कि आप फोन पे भी कर सकते है रुपिया ---